पीछे बहुत दूर-दूर तक कुछ हरे-हरे पेड़ पौधे देखे जा सकते है यह काफी सुंदर दिखाई दे रहा है पानी मे कुछ हरी-हरी घासे उगी हुई है।